अल्बेस्टर का भी रूम दिख रहा और यहां बहुत बड़ी-बड़ी इमारतें हैं।

दिखाई दे रहे है और यहाँ पर एक पेड़ भी है |।

बड़ी-बड़ी पोस्टर भी लगी है और यहां पे --

जो लोगों को कोई परेशानी नहीं हो सकती है और यहां बहुत सारी दो खिड़कियां भी लगी --

एल.सी.डी. भी एल.ई.डी. भी रखी गई है |

यहां पर बहुत ही बड़ा बगीचा है और यह बगीचा बहुत ही खूबसूरत।

ये लगे हुए हैं और यहाँ पर भी बहुत बड़ी --

जो देख रहे है इसमें दो गेट बनाए गए हैं जो की बहुत ही सुंदर।

यहाँ पर एक इमारत है जो इसके काम अभी फिलहाल --

चल रही है और यह काफी सुंदर --

जो कि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत शहर है और --

लगाए गए हैं और यहाँ बालू भी रखी गई है और भी --

बहुत ही सुंदर फूल है ।

और यहां पर बहुत सारी हरी-हरी फल सब्जियां --

और यहां पर बहुत अच्छे बैलून से --

देखने में डर भी लग रहा है।

अच्छी सजाई गई है और यहाँ पर बहुत सारे --

समान है जो इस मॉल के अंदर मौजूद है।

बैठे हुए हैं जो कि यह जगह बहुत ही खूबसूरत दिख --

बगीचे में बहुत बड़े-बड़े पेड़ भी लगाए गए है और --